ये दुकान में पंखा लगा हुआ है दीवार पर एक लकड़ी का मंदिर लगा हुआ है।

ये मेज पे बैठा हुआ है बहोत सारी कुर्सियां हैं।

ये एक कमरे में खड़ा है।

यहां की दीवारों को नीले और सफेद गुब्बारों से सजाया गया है।

यहां दीवार पर एक बोर्ड लगा हुआ है।

और एक मकान भी बनाया जा रहा है।

ये तस्वीर एक गोदाम की है।

और कंटेनर रखे हुए हैं।

यहां पर बिजली के तार भी फैले--

ये तस्वीर एक म्यूजियम की है।

इसके पीछे शीशा लगा हुआ है।

यहां एक कार्यकर्म हो रहा है।

क्रेजी टैटूज का बोर्ड लगा हुआ है।

यह तस्वीर एक मोर की है।

यहां पर बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

बिल्डिंग है और एक टीन डली हुई है।

यहां कुछ बैग भी रखे हैं।

यहां पर कपड़ों की दुकानें है।

इसमें कुछ पन्नियां बिछाई गई है।

ये तस्वीर बहोत सारी बिल्डिंग्स की हैं।

इसमें दीवार पर टी_वी चल रहा है।

यहां कुछ टेबल और कुर्सियां भी लगी--

दीवारों को सजाया गया है।

दीवारों को गुब्बारों से सजाया गया --

ये तस्वीर एक होटेल की है।

बहोत बड़ा एक पोस्टर लगा हुआ है।

पास में कई पेड़ भी है।

और बगीचे में घास भी लगी हुई है।

इसके पास दो आदमी खड़े हैं।